यह एक बहुत पुराणी मंदिर दिख रही है इसमें अम ये थोड़ी सी टूटी हुई भी है नीचे पानी भी दिख रहा है बाजु में बड़े बड़े झाड दिख रहे हैं आसमान भी दिख रहा है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है।

यह एक बहुत बड़ा सा शेर है इसमें लकड़ियों के अ पुल में बैठा हुआ है पीछे बहुत बड़ी बड़ी अ बड़े बड़े पेड़ हैं नीचे भी छोटी छोटी झाड हैं बहुत सारी घासे हैं और लकड़ियों का पुल पूरा अम ए रस्सी से बं --

यह एक बड़ा सा अम बिल्डिंग है बहुत सारियां खिड़कीयां हैं बिल्डिंग में एक गेट है गेट के अंदर बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं बाजु में बहुत सारी बाइक खड़ी हुई हैं एक पीछे से कोई जा रहा है बड़े बड़े झाड हैं बाजु में और सामने एक --